मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
कल माघ पूर्णिमा का पर्व था
माघ का महीना विशेष रूप से नदियों सरोवरों और जलस्त्रोतों से जुड़ा हुआ माना जाता है
हमारे शास्त्रों में कहा गया है
माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्तपापा त्रिदिवम् प्रयान्ति
अर्थात माघ महीने में किसी भी पवित्र जलाशय में स्नान को पवित्र माना जाता है
दुनिया के हर समाज में नदी के साथ जुड़ी हुई कोईनकोई परम्परा होती ही है
नदी तट पर अनेक सभ्यताएं भी विकसित हुई हैं
हमारी संस्कृति क्योंकि हजारों वर्ष पुरानी है इसलिए इसका विस्तार हमारे यहाँ और ज्यादा मिलता है
भारत में कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब देश के किसीनकिसी कोने में पानी से जुड़ा कोई उत्सव न हो
माघ के दिनों में तो लोग अपना घरपरिवार सुखसुविधा छोड़कर पूरे महीने नदियों के किनारे कल्पवास करने जाते हैं
इस बार हरिद्वार में कुंभ भी हो रहा है
जल हमारे लिये जीवन भी है आस्था भी है और विकास की धारा भी है
पानी एक तरह से पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है
कहा जाता है पारस के स्पर्श से लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है
वैसे ही पानी का स्पर्श जीवन के लिये जरुरी है विकास के लिये जरुरी है
साथियो माघ महीने को जल से जोड़ने का संभवतः एक और भी कारण है इसके बाद से ही सर्दियाँ खत्म हो जाती हैं और गर्मियों की दस्तक होने लगती है इसलिए पानी के संरक्षण के लिये हमें अभी से ही प्रयास शुरू कर देने चाहिए
कुछ दिनों बाद मार्च महीने में ही 22 तारीख को वर्ल्ड वाटर डे भी है
मुझे uप
की आराध्या जी ने लिखा है कि दुनिया में करोड़ों लोग अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा पानी की कमी को पूरा करने में ही लगा देते हैं
बिन पानी सब सून ऐसे ही नहीं कहा गया है
पानी के संकट को हल करने के लिये एक बहुत ही अच्छा मेसेज पश्चिम बंगाल के उत्तर दीनाजपुर से सुजीत जी ने मुझे भेजा है
सुजीत जी ने लिखा है कि प्रकृति ने जल के रूप में हमें एक सामूहिक उपहार दिया है इसलिए इसे बचाने की जिम्मेदारी भी सामूहिक है
ये बात सही है जैसे सामूहिक उपहार है वैसे ही सामूहिक उत्तरदायित्व भी है
सुजीत जी की बात बिलकुल सही है
नदी तालाब झील वर्षा या जमीन का पानी ये सब हर किसी के लिये हैं
साथियो एक समय था जब गाँव में कुएं पोखर इनकी देखभाल सब मिलकर करते थे अब ऐसा ही एक प्रयास तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में हो रहा है
यहाँ स्थानीय लोगों ने अपने कुओं को संरक्षित करने के लिये अभियान चलाया हुआ है
ये लोग अपने इलाके में वर्षों से बंद पड़े सार्वजनिक कुओं को फिर से जीवित कर रहे हैं
मध्य प्रदेश के अगरोथा गाँव की बबीता राजपूत जी भी जो कर रही हैं उससे आप सभी को प्रेरणा मिलेगी
बबीता जी का गाँव बुंदेलखंड में है
उनके गाँव के पास कभी एक बहुत बड़ी झील थी जो सूख गई थी
उन्होंने गाँव की ही दूसरी महिलाओं को साथ लिया और झील तक पानी ले जाने के लिये एक नहर बना दी
इस नहर से बारिश का पानी सीधे झील में जाने लगा
अब ये झील पानी से भरी रहती है
साथियो उत्तराखंड के बागेश्वर में रहने वाले जगदीश कुनियाल जी का काम भी बहुत कुछ सिखाता है
जगदीश जी का गाँव और आसपास का क्षेत्र पानी की जरूरतों के लिये के एक प्राकृतिक स्रोत्र पर निर्भर था
लेकिन कई साल पहले ये स्त्रोत सूख गया
इससे पूरे इलाके में पानी का संकट गहराता चला गया
जगदीश जी ने इस संकट का हल वृक्षारोपण से करने की ठानी
उन्होंने पूरे इलाके में गाँव के लोगों के साथ मिलकर हजारों पेड़ लगाए और आज उनके इलाके का सूख चुका वो जलस्त्रोत फिर से भर गया है
साथियो पानी को लेकर हमें इसी तरह अपनी सामूहिक जिम्मेदारियों को समझना होगा
भारत के ज्यादातर हिस्सों में मईजून में बारिश शुरू होती है
क्या हम अभी से अपने आसपास के जलस्त्रोतों की सफाई के लिये वर्षा जल के संचयन के लिये 100 दिन का कोई अभियान शुरू कर सकते हैं इसी सोच के साथ अब से कुछ दिन बाद जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भी जल शक्ति अभियान कैच थे रैन भी शुरू किया जा रहा है
इस अभियान का मूल मन्त्र है कैच थे रैन व्हेरे इत फॉल्स व्हेन इत falls
हम अभी से जुटेंगे हम पहले से जो रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उन्हें दुरुस्त करवा लेंगे गांवो में तालाबों में पोखरों की सफाई करवा लेंगे जलस्त्रोतों तक जा रहे पानी के रास्ते की रुकावटें दूर कर लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल का संचयन कर पायेंगे
मेरे प्यारे देशवासियो जब भी माघ महीने और इसके आध्यात्मिक सामाजिक महत्त्व की चर्चा होती है तो ये चर्चा एक नाम के बिना पूरी नहीं होती
ये नाम है संत रविदास जी का
माघ पूर्णिमा के दिन ही संत रविदास जी की जयंती होती है
आज भी संत रविदास जी के शब्द उनका ज्ञान हमारा पथप्रदर्शन करता है
उन्होंने कहा था
एकै माती के सभ भांडे
सभ का एकौ सिरजनहार
रविदास व्यापै एकै घट भीतर
सभ कौ एकै घड़ै कुम्हार
हम सभी एक ही मिट्टी के बर्तन हैं हम सभी को एक ने ही गढ़ा है
संत रविदास जी ने समाज में व्याप्त विकृतियों पर हमेशा खुलकर अपनी बात कही
उन्होंने इन विकृतियों को समाज के सामने रखा उसे सुधारने की राह दिखाई और तभी तो मीरा जी ने कहा था
गुरु मिलिया रैदास दीन्हीं ज्ञान की गुटकी
ये मेरा सौभाग्य है कि मैं संत रविदास जी की जन्मस्थली वाराणसी से जुड़ा हुआ हूँ
संत रविदास जी के जीवन की आध्यात्मिक ऊंचाई को और उनकी ऊर्जा को मैंने उस तीर्थ स्थल में अनुभव किया है
साथियो रविदास जी कहते थे
करम बंधन में बन्ध रहियो फल की ना तज्जियो आस
कर्म मानुष का धर्म है सत् भाखै रविदास
अर्थात् हमें निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए फिर फल तो मिलेगा ही मिलेगा यानी कर्म से सिद्धि तो होती ही होती है
हमारे युवाओं को एक और बात संत रविदास जी से जरुर सीखनी चाहिए
युवाओं को कोई भी काम करने के लिये खुद को पुराने तौर तरीकों में बांधना नहीं चाहिए
आप अपने जीवन को खुद ही तय करिए
अपने तौर तरीके भी खुद बनाइए और अपने लक्ष्य भी खुद ही तय करिए
अगर आपका विवेक आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो आपको दुनिया में किसी भी चीज से डरने की जरुरत नहीं है
मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि कई बार हमारे युवा एक चली आ रही सोच के दबाव में वो काम नहीं कर पाते जो करना वाकई उन्हें पसंद होता है
इसलिए आपको कभी भी नया सोचने नया करने में संकोच नहीं करना चाहिए
इसी तरह संत रविदास जी ने एक और महत्वपूर्ण सन्देश दिया है
ये सन्देश है अपने पैरों पर खड़ा होना
हम अपने सपनों के लिये किसी दूसरे पर निर्भर रहें ये बिलकुल ठीक नहीं है
जो जैसा है वो वैसा चलता रहे रविदास जी कभी भी इसके पक्ष में नहीं थे और आज हम देखते है कि देश का युवा भी इस सोच के पक्ष में बिलकुल नहीं है
आज जब मैं देश के युवाओं में इनोवेटिव स्पिरिट देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे युवाओं पर संत रविदास जी को जरुर गर्व होता
मेरे प्यारे देशवासियो आज नेशनल साइंस डे भी है
आज का दिन भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन जी द्वारा की गई रमन इफेक्ट खोज को समर्पित है
केरल से योगेश्वरन जी ने NamoApp पर लिखा है कि रमन इफेक्ट की खोज ने पूरी विज्ञान की दिशा को बदल दिया था
इससे जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा सन्देश मुझे नासिक के स्नेहिल जी ने भी भेजा है
स्न्नेहिल जी ने लिखा है कि हमारे देश के अनगिनत वैज्ञानिक हैं जिनके योगदान के बिना साइंस इतनी प्रगति नहीं कर सकती थी
हम जैसे दुनिया के दूसरे वैज्ञानिकों के बारे में जानते हैं वैसे ही हमें भारत के वैज्ञानिकों के बारे में भी जानना चाहिए
मैं भी मन की बात के इन श्रोताओं की बात से सहमत हूँ
मैं जरुर चाहूँगा कि हमारे युवा भारत के वैज्ञानिक इतिहास को हमारे वैज्ञानिकों को जाने समझें और खूब पढ़ें
साथियो जब हम साइंस की बात करते हैं तो कई बार इसे लोग फिजिक्सकेमिस्ट्री या फिर लैब्स तक ही सीमित कर देते हैं लेकिन साइंस का विस्तार तो इससे कहीं ज्यादा है और आत्मनिर्भर भारत अभियान में साइंस की शक्ति का बहुत योगदान भी है
हमें साइंस को लैब टो लैंड के मंत्र के साथ आगे बढ़ाना होगा
उदाहरण के तौर पर हैदराबाद के चिंतला वेंकट रेड्डी जी हैं
रेड्डी जी के एक डॉक्टर मित्र ने उन्हें एक बार विटामिनडी की कमी से होने वाली बीमारियाँ और इसके खतरों के बारे में बताया
रेड्डी जी किसान हैं उन्होंने सोचा कि वो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कर सकते हैं इसके बाद उन्होंने मेहनत की और गेहूं चावल की ऐसी प्रजातियों को विकसित की जो खासतौर पर विटामिनडी से युक्त हैं
इसी महीने उन्हें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर्गेनाइजेशन जेनेवा से पेटेंट भी मिली है
ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि वेंकट रेड्डी जी को पिछले साल पद्मश्री से भी सम्मानित किया था
ऐसे ही बहुत इनोवेटिव तरीके से लद्दाख के उरगेन फुत्सौग भी काम कर रहे हैं
उरगेन जी इतनी ऊंचाई पर आर्गेनिक तरीके से खेती करके करीब 20 फसलें उगा रहे हैं वो भी साइक्लिक तरीके से यानी वो एक फसल के वास्ते को दूसरी फसल में खाद के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं
है न कमाल की बात
इसी तरह गुजरात के पाटन जिले में कामराज भाई चौधरी ने घर में ही सहजन के अच्छे बीज विकसित किए हैं
सहजन को कुछ लोग सर्गवा बोलते हैं इसे मोरिंगा या ड्रम स्टिक भी कहा जाता है
अच्छे बीजों की मदद से जो सहजन पैदा होता है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है
अपनी उपज को वो अब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल भेजकर अपनी आय भी बढ़ा रहे हैं
साथियो आजकल चिया सीड्स चिया सीड्स का नाम आप लोग बहुत सुनते होंगे
हेल्थ अवेयरनेस से जुड़े लोग इसे काफी महत्व देते हैं और दुनिया में इसकी बड़ी मांग भी है
भारत में इसे ज्यादातर बाहर से मगाते हैं लेकिन अब चिया सीड्स चिया सीड्स में आत्मनिर्भरता का बीड़ा भी लोग उठा रहे हैं
ऐसे ही यूपी के बाराबंकी में हरिश्चंद्र जी ने चिया सीड्स चिया सीड्स की खेती शुरू की है
चिया सीड्स चिया सीड्स की खेती उनकी आय भी बढ़ाएगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी मदद करेगी
साथियो एग्रीकल्चर वास्ते से वेल्थ क्रिएट करने के भी कई प्रयोग देशभर में सफलतापूर्वक चल रहे हैं
जैसे मदुरै के मुरुगेसन जी ने केले के वास्ते से रस्सी बनाने की एक मशीन बनाई है
मुरुगेसन जी के इस इनोवेशन से पर्यावरण और गंदगी का भी समाधान होगा और किसानों के लिए अतिरिक्त आय का रास्ता भी बनेगा
साथियो मन की बात के श्रोताओं को इतने सारे लोगों के बारे में बताने का मेरा मकसद यही है कि हम सभी इनसे प्रेरणा लें
जब देश का हर नागरिक अपने जीवन में विज्ञान का विस्तार करेगा हर क्षेत्र में करेगा तो प्रगति के रास्ते भी खुलेंगे और देश आत्मनिर्भर भी बनेगा
और मुझे विश्वास है ये देश का हर नागरिक कर सकता है
मेरे प्यारे साथियो कोलकाता के रंजन जी ने अपने पत्र में बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी सवाल पूछा है और साथ ही बेहतरीन तरीके से उसका जवाब भी देने की कोशिश की है
वे लिखते हैं कि जब हम आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं तो इसका हमारे लिए क्या अर्थ होता है इसी सवाल के जवाब में उन्होंने खुद ही आगे लिखा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान केवल एक गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है बल्कि एक नेशनल स्पिरिट है
वो मानते हैं कि आत्मनिर्भर होने का अर्थ है कि अपनी किस्मत का फैसला खुद करना यानि स्वयं अपने भाग्य का नियंता होना
रंजन बाबू की बात सौटका सही है
उनकी बात को आगे बढ़ाते हुये मैं ये भी कहूँगा कि आत्मनिर्भरता की पहली शर्त होती है अपने देश की चीजों पर गर्व होना अपने देश के लोगों द्वारा बनाई वस्तुओं पर गर्व होना
जब प्रत्येक देशवासी गर्व करता है प्रत्येक देशवासी जुड़ता है तो आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान न रहकर एक नेशनल स्पिरिट बन जाता है
जब आसमान में हम अपने देश में बने फाइटर प्लेन तेजस को कलाबाजियाँ खाते देखते हैं जब भारत में बने टैंक भारत में बनी मिसाइलें हमारा गौरव बढ़ाते हैं जब समृद्ध देशों में हम मेट्रो ट्रेन के मादे इन इंडिया कोचेस देखते हैं जब दर्जनों देशों तक मादे इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को पहुँचते हुए देखते हैं तो हमारा माथा और ऊंचा हो जाता है
और ऐसा ही नहीं है कि बड़ीबड़ी चीजें ही भारत को आत्मनिर्भर बनाएँगी
भारत में बने कपड़े भारत के टैलेंटेड कारीगरों द्वारा बनाया गया हैंडीक्राफ्ट का समान भारत के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भारत के मोबाइल हर क्षेत्र में हमें इस गौरव को बढ़ाना होगा
जब हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तभी सही मायने में आत्मनिर्भर बन पाएंगे और साथियो मुझे खुशी है कि आत्मनिर्भर भारत का ये मंत्र देश के गाँवगाँव में पहुँच रहा है
बिहार के बेतिया में यही हुआ है जिसके बारे में मुझे मीडिया में पढ़ने को मिला
बेतिया के रहने वाले प्रमोद जी दिल्ली में एक टेक्नीशियन के रूप में लेड बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे उन्होंने इस फैक्ट्री में कार्य करने के दौरान पूरी प्रक्रिया को बहुत बारीकी से समझा
लेकिन कोरोना के दौरान प्रमोद जी को अपने घर वापस लौटना पड़ा
आप जानते हैं लौटने के बाद प्रमोद जी ने क्या किया उन्होंने खुद लेड बल्ब बनाने की एक छोटीसी यूनिट ही शुरू कर दी
उन्होंने अपने क्षेत्र के कुछ युवाओं को साथ लिया और कुछ ही महीनों में फैक्ट्री वर्कर से लेकर फैक्ट्री आउनर बनने तक का सफर पूरा कर दिया
वह भी अपने ही घर में रहते हुये
एक और उदाहरण है यूपी के गढ़मुक्तेश्वर का
गढ़मुक्तेश्वर से श्रीमान संतोष जी ने लिखा है कि कैसे कोरोना काल में उन्होंने आपदा को अवसर में बदला
संतोष जी के पुरखे शानदार कारीगर थे चटाई बनाने का काम करते थे
कोरोना के समय जब बाकी काम रुके तो इन लोगों ने बड़ी ऊर्जा और उत्साह के साथ चटाई बनाना शुरू किया
जल्द ही उन्हें न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों से भी चटाई के आर्डर मिलने शुरू हो गए
संतोष जी ने यह भी बताया है इससे इस क्षेत्र की सैकड़ों साल पुरानी खूबसूरत कला को भी एक नई ताकत मिली है
साथियो देशभर में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान में इसी तरह अपना योगदान दे रहे हैं
आज यह एक भाव बन चुका है जो आम जनों के दिलों में प्रवाहित हो रहा है
मेरे प्यारे देशवासियो मैंने NaMoApp पर गुड़गाँव निवासी मयूर की एक इंटरेस्टिंग पोस्ट देखी
वे पैशनेट बर्ड वॉचर और नेचर लवर हैं
मयूर जी ने लिखा है कि मैं तो हरियाणा में रहता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप असम के लोगों और विशेष रूप से काजीरंगा के लोगों की चर्चा करें
मुझे लगा कि मयूर जी राइनोस के बारे में बात करेंगे जिन्हें वहाँ का गौरव कहा जाता है
लेकिन मयूर जी ने काजीरंगा में वाटरफाउल्स वॉटरफाउल्स की संख्या में हुई बढ़ोतरी को लेकर असम के लोगों की सराहना के लिए कहा है
मैं ढूंढ रहा था कि हम वाटरफाउल्स को साधारण शब्दों में क्या कह सकते हैं तो एक शब्द मिला जलपक्षी
ऐसे पक्षी जिनका बसेरा पेड़ों पर नहीं पानी पर होता है जैसे बतख वगैरह
काजीरंगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व अथॉरिटी कुछ समय से एनुअल वाटरफाउल्स सेंसस करती आ रही है
इस सेंसस से जल पक्षियों की संख्या का पता चलता है और उनके पसंदीदा हैबिटेट की जानकारी मिलती है
अभी दोतीन सप्ताह पहले ही सर्वे फिर हुआ है
आपको भी ये जानकार खुशी होगी कि इस बार जलपक्षियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में करीब एकसौ पिचहत्तर 175 प्रतिशत ज्यादा आई है
इस सेंसस के दौरान काजीरंगा नेशनल पार्क में बर्ड्स की कुल 112 स्पेसीज को देखा गया है
इनमें से 58 स्पेसीज यूरोप सेंट्रल एएसआईए और ईस्ट एएसआईए सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए विंटर माइग्रेंट्स हैं
इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि यहाँ बेहतर वाटर कंजर्वेशन होने के साथ ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम है
वैसे कुछ मामलों में पॉजिटिव ह्यूमन इंटरफेरेंस भी बहुत महत्वपूर्ण होता है
असम के श्री जादव पायेन्ग को ही देख लीजिये
आप में से कुछ लोग उनके बारे में जरूर जानते होंगे
अपने कार्यों के लिए उन्हें पद्म सम्मान मिला है
श्री जादव पायेन्ग वो शख्स हैं जिन्होंने असम में मजूली आइलैंड में करीब 300 हेक्टेयर प्लांटेशन में अपना सक्रिय योगदान दिया है
वे वन संरक्षण के लिए काम करते रहे हैं और लोगों को प्लांटेशन एवं बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन को लेकर प्रेरित करने में भी जुटे हुए हैं
साथियो असम में हमारे मंदिर भी प्रकृति के संरक्षण में अपनी अलग ही भूमिका निभा रहे हैं यदि आप हमारे मंदिरों को देखेंगे तो पाएंगे कि हर मंदिर के पास तालाब होता है
हजो स्थित हयाग्रीव मधेब मंदिर सोनितपुर के नागशंकर मंदिर और गुवाहाटी में स्थित उग्रतारा टेम्पल के पास इस प्रकार के कई तालाब हैं
इनका उपयोग विलुप्त होते कछुओं की प्रजातियों को बचाने के लिए किया जा रहा है
असम में कछुओं की सबसे अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं
मंदिरों के ये तालाब कछुओं के संरक्षण प्रजनन और उनके बारे में प्रशिक्षण के लिए एक बेहतरीन स्थल बन सकते हैं
मेरे प्यारे देशवासियो कुछ लोग समझते हैं कि इनोवेशन करने के लिए आपका साइंटिस्ट होना जरूरी है कुछ सोचते हैं कि दूसरों को कुछ सिखाने के लिए आपका टीचर होना जरूरी है
इस सोच को चुनौती देने वाले व्यक्ति हमेशा सराहनीय होते हैं
अब जैसे क्या कोई किसी को सोल्डियर बनने के लिए प्रशिक्षित करता है तो क्या उसको सैनिक होना जरूरी है आप सोच रहे होंगे कि हाँ जरुरी है
लेकिन यहाँ थोड़ासा ट्विस्ट है
माइगोव पर कमलकांत जी ने मीडिया की एक रिपोर्ट साझा की है जो कुछ अलग बात कहती है
ओडिशा में अराखुड़ा में एक सज्जन हैं नायक सर
वैसे तो इनका नाम सिलू नायक है पर सब उन्हें नायक सर ही बुलाते हैं
दरअसल वे मन ओन आ मिशन हैं
वह उन युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षित करते हैं जो सेना में शामिल होना चाहते हैं
नायक सर के आर्गेनाइजेशन का नाम महागुरु बैटेलियन है
इसमें फिजिकल फिटनेस से लेकर इंटरव्यूज तक और राइटिंग से लेकर ट्रेनिंग तक इन सभी पहलुओं के बारे में बताया जाता है
आपको यह जानकार हैरानी होगी कि उन्होंने जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया है उन्होंने थल सेना जल सेना वायु सेना सीआरपीएफ बीएसएफ ऐसे यूनिफॉर्म फोर्सेस में अपनी जगह बनाई है
वैसे आप ये जानकर भी आश्चर्य से भर जाएंगे कि सिलू नायक जी ने खुद ओडिशा पुलिस में भर्ती होने के लिए प्रयास किया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाए इसके बावजूद उन्होंने अपने प्रशिक्षण के दम पर अनेक युवाओं को राष्ट्र सेवा के योग्य बनाया है
आइए हम सब मिलकर नायक सर को शुभकामना दें कि वह हमारे देश के लिए और अधिक नायकों को तैयार करें
साथियो कभीकभी बहुत छोटा और साधारण सा सवाल भी मन को झकझोर जाता है
ये सवाल लंबे नहीं होते हैं बहुत सिम्पल होते हैं फिर भी वे हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं
कुछ दिन पहले हैदराबाद की अपर्णा रेड्डी जी ने मुझसे ऐसा ही एक सवाल पूछा
उन्होंने कहा कि आप इतने साल से पीएम हैं इतने साल सीएम रहे क्या आपको कभी लगता है कि कुछ कमी रह गई
अपर्णा जी का सवाल बहुत सहज है लेकिन उतना ही मुश्किल भी
मैंने इस सवाल पर विचार किया और खुद से कहा मेरी एक कमी ये रही कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सीखने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया मैं तमिल नहीं सीख पाया
यह एक ऐसी सुंदर भाषा है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है
बहुत से लोगों ने मुझे तमिल लिटरेचर की क्वालिटी और इसमें लिखी गई कविताओं की गहराई के बारे में बहुत कुछ बताया है
भारत ऐसी अनेक भाषाओँ की स्थली है जो हमारी संस्कृति और गौरव का प्रतीक है
भाषा के बारे में बाते करते हुए मैं एक छोटी सी इंटरेस्टिंग क्लिप आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ
साउंड क्लिप स्टेच्यू ओएफ यूनिटी
दरअसल अभी जो आप सुन रहे थे वो स्टेच्यू ओएफ यूनिटी पर एक गाइड संस्कृत में लोगों को सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के बारे में बता रही हैं
आपको जानकर खुशी होगी कि केवड़िया में 15 से ज्यादा गाइड धारा प्रवाह संस्कृत में लोगों को गाइड करते हैं
अब मैं आपको एक और आवाज सुनवाता हूं
साउंड क्लिप क्रिकेट कमेंटरी
आप भी इसे सुनकर हैरान हो गए होंगे दरअसल यह संस्कृत में की जा रही क्रिकेट कमेंटरी है
वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालयों के बीच एक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है
ये महाविद्यालय हैं शास्त्रार्थ महाविद्यालय स्वामी वेदांती वेद विद्यापीठ श्री ब्रह्म वेद विद्यालय और इंटरनेशनल चंद्रमौली चैरिटेबल ट्रस्ट
इस टूर्नामेंट के मैचों के दौरान कमेंटरी संस्कृत में भी की जाती है
अभी मैंने उस कमेंटरी का एक बहुत ही छोटासा हिस्सा आपको सुनाया
यही नहीं इस टूर्नामेंट में खिलाड़ी और कमेंटेटर पारंपरिक परिधान में नजर आते हैं
यदि आपको एनर्जी एक्साइटमेंट सस्पेंस सब कुछ एक साथ चाहिए तो आपको खेलों की कमेंटरी सुननी चाहिए
टीवी आने से बहुत पहले स्पोर्ट्स कमेंटरी ही वो माध्यम थी जिसके जरिए क्रिकेट और हॉकी जैसे खेलों का रोमांच देशभर के लोग महसूस करते थे
टेनिस और फुटबॉल मैचों की कमेंटरी भी बहुत अच्छी तरह से पेश की जाती है
हमने देखा है कि जिन खेलों में कमेंटरी समृद्ध है उनका प्रचारप्रसार बहुत तेजी से होता है
हमारे यहां भी बहुत से भारतीय खेल हैं लेकिन उनमें कमेंटरी कल्चर नहीं आया है और इस वजह से वो लुप्त होने की स्थिति में हैं
मेरे मन में एक विचार है क्यों न अलगअलग स्पोर्ट्स और विशेषकर भारतीय खेलों की अच्छी कमेंटरी अधिक से अधिक भाषाओं में हो हमें इसे प्रोत्साहित करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए
मैं खेल मंत्रालय और प्राइवेट संस्थान के सहयोगियों से इस बारे में सोचने का आग्रह करूंगा
मेरे प्यारे युवा साथियो आने वाले कुछ महीने आप सब के जीवन में विशेष महत्व रखते हैं
अधिकतर युवा साथियों के एक्साम्स परिक्षाए होंगी
आप सब को याद है ना वारियर बनना है वॉरियर नहीं हँसते हुए एक्साम देने जाना है और मुस्कुराते हुए लौटना है
किसी और से नहीं अपने आप से ही स्पर्धा करनी है
पर्याप्त नींद भी लेनी है और टाइम मैनेजमेंट भी करना है
खेलना भी नहीं छोड़ना है क्योंकि जो खेले वो खिले
रिविजन और याद करने के स्मार्ट तरीक़े अपनाने हैं यानी कुल मिलाकर इन एक्साम्स में अपने बेस्ट को बाहर लाना है
आप सोच रहे होंगे यह सब होगा कैसे
हम सब मिलकर यह करने वाले है
हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम सब करेंगे परीक्षा पे चर्चा
लेकिन मार्च में होने वाली परीक्षा पे चर्चा से पहले मेरी आप सभी एक्साम वॉरियर्स से पेरेंट्स से और टीचर्स से रिक्वेस्ट है कि अपने अनुभव अपने टिप्स ज़रूर शेयर करें
आप माइगोव पर शेयर कर सकते हैं
नरेंद्रमोदी App पर शेयर कर सकते हैं
इस बार की परीक्षा पे चर्चा में युवाओं के साथसाथ पेरेंट्स और टीचर्स भी आमंत्रित है
कैसे पार्टिसिपेट करना है कैसे प्राइज जीतने है कैसे मेरे साथ डिस्कशन का अवसर पाना है यह सारी जानकारियाँ आपको माइगोव पर मिलेंगी
अब तक एक लाख से अधिक विद्यार्थी करीब 40 हजार पेरेंट्स और तकरीबन 10 हजार टीचर भाग ले चुके हैं
आप भी आज ही पार्टिसिपेट कीजिये
इस कोरोना के समय में मैंने कुछ समय निकालकर एक्साम वारियर बुक में भी कई नए मंत्र जोड़ दिए हैं अब इसमें पेरेंट्स के लिए भी कुछ मंत्र अद्द किये गए हैं
इन मंत्रों से जुड़ी ढ़ेर सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज नरेंद्रमोदी App पर दी हुई है जो आपके अंदर के एक्साम वारियर को इग्नाइट करने में मदद करेंगी
आप इनको ज़रूर ट्राय करके देखिए
सभी युवा साथियों को आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुतबहुत शुभकामनाएं
मेरे प्यारे देशवासियो मार्च का महीना हमारे फाइनेंशियल यियर का आखिरी महीना भी होता है इसलिए आप में से बहुत से लोगों के लिए काफी व्यस्तता भी रहेगी
अब जिस तरह से देश में आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही हैं उससे हमारे व्यापारी और उद्यमी साथियों की व्यस्तता भी बहुत बढ़ रही है
इन सारे कार्यों के बीच हमें कोरोना से सावधानी कम नहीं करनी है
आप सब स्वस्थ रहेंगे खुश रहेंगे कर्त्तव्य पथ पर डटे रहेंगे तो देश तेजी से आगे बढ़ता रहेगा
आप सभी को त्योहारों की अग्रिम शुभकामनायें साथसाथ कोरोना के सम्बन्ध में जो भी नियमों का पालन करना उसमें कोई ढिलाई नहीं आनी चाहिये
बहुतबहुत धन्यवाद